बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और सामने दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में मंदिर दिखाई दे रहा--

दिर में बहुत सारा डिजाइन काटा गया है और पेंट भी किया गया है।

ऊपर में तिरपाल भी दिखाई दे रहा है।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

इस ये में हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा धाप बनाया गया है।

सामने शीशा भी लगाया हुआ है।

भी टू लिखा हुआ है और बहुत सारा पोस्टर भी लगाया गया है।

बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।

खंभा भी गाड़ा गया है और बहुत सारे गाड़ी भी दिखाई दे रहे है हैं।

सामने लोहे का बहुत सारा पलंग बनाया गया है।

बहुत सारा कुर्सी भी दिखाई दे रहा--

लाइट भी दिखाई दे रहा--

कर्कट भी दिखाई दे रहा है।

जैसी हमें बुक दुकान दिखाई दे रहा है।

पीछे अंधेरा है और बहुत सारा लाइट भी लगाया गया है।

बहुत सारा लाइट भी दिखाई दे रहा है।

मार्बल भी बिछाया गया है।

सामने एक लेडिस दिखाई दे रहा है।

दृश्य में बिल्डिंग दिखाई दे रहा--

बिल्डिंग को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।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

बहुत सारा फूल पत्ती भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमीन सेल्फी पीछे से ले रहा है।

दृश्य में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जोकि अलग-अलग ड्रेस पहने हुए हैं और नीचे चटाई बिछाकर बैठे हुए हैं।

बहुत सारे नीचे गाड़ी भी लगाया हुआ है।

अगल बगल बहोत सारा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

सामने दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में रेलिंग मारा हुआ है।

सामने बेड भी दिखाई दे रहा है।

टेबुल में बलिष्ठा रखा गया है व्हाइट कलर और काला कलर का है।

दृसय में घर दिखाई दे रहा है।

सामने एक फेड़ भी दिखाई दे रहा है।